कुछ छाते लटके हुए दिखाई दे रहे हैं केबिन पर एक--

कैलकुलेटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर बहोत सारी गोनिया रखी हुई दिखाई दे रही है।

ढाबे पे कुर्सी टेबल लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

हाफ शेल्ड के ऊपर बहोत सारे दरख्त दिखाई दे रहे हैं।

दो लाइट के लौब दिखाई दे रहे है बड़े बड़े--

एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक बाल्टी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक सोनार की दुकान दिखाई दे रहा है।

ऊपर बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये एक योगा रूम दिखाई दे रहा है।

होटल में कुर्सी टेबल रखे हुए है।

अंदर एक औरत दिखाई दे रही है।

बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

एक औरत जाते हुए दिखाई दे रही है।

छोटे छोटे मछलियां दिखाई दे रही है।

ऊपर बस्टर्ड डेरी फार्म लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।